ओ तीनो अपना कार्य पूरी लगन से करते नज़र आ रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा खुला मैदान है इसके आस-पास कुछ बिल्डिंग्स भी बनी है कुछ घर भी बने --

यह एक सूखा बंजर मैदान देखने में प्रतीत हो रहा है।

इस फोटो में एक दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है।